तथा यह दुकान खाने पीने की है।

फोटो में एक भवन या घर दिखाई दे रहा है।

जो कि बहुत पुराना दिखाई पड़ रहा है।

यह एक सिलाई बुनाई की मशीन है।

स्‍वेटर्स वगैरह बुने जाते हैं।

कर रही है इसके पास विभिन्‍न मछलियां रखी गई हैं जिन का मूल्‍य --

यह एक सीमेंट तथा रोड़ी --

यह एक बहुत ही सुन्‍दर रिवर है जिसके --

यह बच्‍चे दस से बारह साल तथा--

यह बहोत बड़ा ग्राउंड है जहां पर खेला या घूमा जा सकता हैं।

इसके चारों तरफ दीवार बनाई गई है।

यह दृश्‍य स्‍कूल या ट्यूशन की --

विभिन्‍न वर्कर्स काम कर रहे हैं।

यहाँ पर काले रंग की बड़ी-बड़ी चट्टानों से बने --

अपनी प्रस्‍तुती दे रहे हैं।

तथा इसमें संगीत के लिए --

यह ऑन रोड पर स्थित है।

यह है फोटो रेसिकेस में --

यहां पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग --